और पीछे पड़ोस में अ अपार्टमेंट दिखाई दे रहा है।

इन ऑटो का इस्तेमाल लोग आवाजमन के लिए यूज़ करते हैं।

तो इसलिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है।

पीछे एक सफेद कलर की वैन दिखाई दे रही है।

सामने कुछ घास वगैरह लगी है। हरियाली वगैरह है। यह दृश्य शायद दे --

यह जनवरी पंद्रह अगस्त की परफॉर्मेंस लग रही है।

जिस पे तीन ए.सी. के वेंट लगे हैं।

और एक व्यक्ति है जो इन फूल-पौधों के पीछे बैठा है।

इसमें एक कांच का काउंटर साइड में नजर आ रहा है जिसमें हैंकर लगे हुए हैं।